जिसमें इंसानों के पैर की प्रिंट छपी हुई है उसमें जूते की प्रिंट छपी है ये एक दुकान है जूते चप्पलों की उसके साइड में एक बैंक है और सड़क --

यह एक ओपन जिम है जहा पे काफी सारे बच्चे जिम कर रहे है

एक लाल कलर का कोको कोला अ फ्रिज बना है जिसके अंदर काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स है और पंखा है सफेद कलर का।

यह एक कछुआ है जो की काले कलर का है।

यहाँ एक अ- लेडिस है। लेडिस के सामने एक बच्चा है। लेडिस ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के रखी है और पिक कलर की दीवाल --

गाजर रखी है ओरेंज कलर की। करेले हैं काफी सारी सब्जियाँ हैं यहाँ प --